यहां पर वेडिंग चल रही है और यहां पर--

यहां मेला लगा हुआ--

एक स्लाइडिंग झूला लगा हुआ है जैसा--

यहां पर एक बहोत बड़ी चीज है ये--

हमें नजर आ रहा है यहां पर एक बहोत बड़ा--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

बहुत सारी चीजें हैं।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

यहां पर हमें नजर आ--